कुछ पार्टी वगैरा चल रही है जैसे बलूंस लगे इत्ते प्यारे डेकोरेशन के समान लगे हुए हैं।

जिसमें आपकी कितनी सारी सुविधाएं की जा--

जिसमें बाहर से गेट के द्वारा ये फोटो ली गई है पेड़ भी दिख रहे हैं और--

उसके कितने सारे फायदे हैं वो तो आप जानते--

यह एक पब्लिक प्लेस है जहां पे कुछ लोग आना जाना कर रहे हैं।

जैसा कि आप देख सकते हैं यह एक न--

जैसा कि आप देख सकते हो यहां पे कपड़ों की दुकाने दिख रही है वो भी छोटे छोटे कपड़ों के जैसा आप--

वो इंसान अपने करियर को आगे कर--

बहोत वैरायटी की प्लंबरिंग के समान है जैसे टैंकी का हो गया।

ऊं रखा जाता है यहां पे तो दो एरोप्लेनस आपको दिख--